और बहोत सारे पेपर अलग अलग रखा हुआ है नीचे भी बहुत सारा पेपर दिख रहा है और कार्टून में भरा जा रहा है।

और आगे साइड में दो काउंटर हैं एक काउंटर में ऊपर साइड में पेन ऑन रखा गया और बुक रखा गया और काउंटर के सामने साइड में--

नदी के जस्ट ऊपर एक बड़ा सा लोखंड का ब्रिज बनाया गया है।

और ब्रिज पे लाइट वेट भी लगाया गया है और नीचे साथ में --

यह एक साइंस का लैब है यहाँ पे ऊपर साइड में एक पँखा है।

और यहाँ पे रोड काफी साफ और सुतरा हैं और ये दिखने भी बहुत अच्छा लग रहा हैं।

और उसके आगे एक आदमी खड़ा होके फोटो खिचा रहा हैं और साइड साइड में हरे भरे पेड़ उड़ रहे हैं बहुत सारे--

अ बिल्डिंग उल्डिंग भी दिख रहा है बहोत सारा और यहां पे बहोत सारी पब्लिक खड़ी हुई है।

और नदी के किनारे साइड में बहोत सारा झूमर उमर लगाया गया झंडा लगाया गया--

यहां पे दो लड़की है मोमबत्ती जलाके लेके जाते हुए दिख रही हैं और दो भाई साहब--

पू पोस्टर चिपकाया गया हैं और कुछ लोग साइड में बैठे हुए हैं कुर्सी पे और नीचे मैट बिछाया गया हैं।